फोटो में चेयर नजर आ रही है।

फोटो में लाइट नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो में बादल नजर आ र--

ए_सी नजर आ रही है मुझे इस फोटो में पंखा नजर आ रहा है।

इस फोटो में बादल दिख रहे हैं।

ए_सी नजर आ रही है इस फोटो में--

इस फोटो में लड़की नजर आ रही है इस फोटो में बादल नजर आ रहा --

है मुझे इस फोटो में पानी की टंकी नजर आ रही--

इस फोटो में मां शारदा कंप्यूटर नजर आ रहा है इस--

फोटो में लोग दिख रहे हैं इस--

इस फोटो में बच्चे नजर आ--

इस फोटो में पानी की टंकी नजर आ र--

इस फोटो में बहोत सी दवाइयां नजर--

इस फोटो में एच_पी गैस नजर आ र--

फोटो में स्पा सेंटर नजर आ रहा है।

फोटो में लोग नजर आ रहे।

फोटो में कच्चे घर नजर आ र--

इस फोटो में हनुमान जी नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में जिम नजर आ रही है।